उर पे और है जो रेड कलर का बेग टांगा हुआ है और एक और है जो रेड कलर का बेग और उसके आगे तीन बंदे जा रहे है और काफी बड़े बड़े पेड़ है यहां पे और नीचे काफी पत्तियां जो सूख गयी है।

और दूसरा वाइट कलर का फूल है। एक गेंदा फूल पिंक है। रेड कलर का है और ऑरेंज कलर वाइट कलर का फूल है और --

यहाँ पर बस है। व्हाइट कलर का बस के ऊपर भी कई यात्री चढ़े हुए हैं और एक बाइक भी लगा हुआ है और एक लेडीज हैं जो केवल देख रहा है।

एक समुन्द्र नदी है जहाँ पर --